दोनों लड़का देखने में बहुत अच्छा हैं एक लड़का स्माइल कर रहा है ये दोनों लड़का एक शादी में गया हैं जहाँ पर ये --

यह आदमी मछली को काट काट कर बेच रहा है । ताज़ी मछली है ।

जहाँ पर एक शिक्षक पढ़ा रहे है। इस कोचिंग सेंटर में लड़के एवं लड़कियां दोनों है और सभी पढाई कर रहे है।

यहाँ पर एक बड़ा-सा बिल्डिंग भी है जो की कॉलेज है।